यह तस्वीर हमे एक उद्यान की दिखाई दे रही है जिसमें--

इस तस्वीर मे हमे एक हिरन का बच्चा दिख रहा है जो की काफी प्यारा सा लग रहा है।

इस तस्वीर में हमे एक विशाल मैदान दिखाई दे रहा है जिसमें हमे क्रिकेट का खेल चलता हुआ नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में हमे एक कार्यालय के आगे एक बंजर सा मैदान नज़र आ रहा हैं।

यह जलेबियाँ काफी अच्छी दिखाई दे रही है व इसके नीचे एक तेल की कढाईया है।